जहाँ अलग अलग तरह की खेत कटे हुए हैं और उनपे अलग अलग तरह की उत्पाद उगाने की कोशिश गई है हर तरफ हरयाली है और सूंदर है।

और उसके बोर्ड पर लिखा है मे आई हेल्प यू ।

वह एक बोहत प्यारा पोज़ दे रही है उसमें उसने अपना हा-पैर दूसरे हाथ से पकड़ रखा है और एक हा--

बोहोत साफ सुथरा है। इसपे जगह-जगह लाइट पोस्ट भी लगे हैं।

वहां एक पेड़ भी है और एक बहुत बड़ा पत्थर भी है और पहाड़ बहुत बड़ा है वह बहुत सुन्दर दिख रहा है।

मानव और इन्सानों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो विभिन्न प्रकार की कार्य कर रहे हैं। एक बड़ा-सा पेड़ की मूर्ति है।

इसके आसपास कुछ डाक्टरी मशीनें लगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि किसी --

नदी के किनारे पे बोहोत जादा गंदगी है जिसको सफाई करने की जरूरत लगती है। यह किसी का है।

यह एक शादी का मंडप है जिसको फूलो से और लाइटों से सजाया गया हैं।